हमें यहां सामने एक पोल दिख रहा है जिसमें बहोत सारे वायर दिख रहे हैं।

और यहां सामने हमें एक बोलेरो दिख रहा है जिसके दरवाजे में एक ठो ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति खड़ा--

हॉस्पिटल के लेफ्ट साइड में ऊपर सीढ़ी टंगा हुआ है।

हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारे फूल पौधे दिख रहे हैं।

और एक घर है जो येलो कलर से पेंट है।

यह दृश्य में एक टोटो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और हमें फोटो में बहोत सारे वायर भी दिख रहे हैं।

यह देखके हमें कोई ए_टी_एम का नजर लग रहा है।

सामने बहुत सारे पत्थर की बालू फेंकी गए हैं।

एक घर है जो बन रहा है और एक घर है जो बना हुआ है।

सामने एक वृक्ष है जिसमें त्रिशूल और एक गाय का मूर्ति है।

सामने हमें एक रास्ता दिख रहा है।

यह दृश्य एक नदी या एक पौंड का लग रहा है।

और यह दीवार फर्श हमारा पक्का से कवर्ड है।